मुझे यहां केक दिखाई दे रहा है जो की एक चॉकलेट केक --

चॉकलेट लगी हुई नजर आ रही है।

सामने ही गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

की हुई दिखाई दे रही हैं।

पार्क में पेड़ लगे हुए हैं पार्क में बहोत सारे झूले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे सामने ही गाड़ियां आती दिखाई दे रही हैं जोकि सड़क पर आ रही हैं।

मुझे बहोत ही लोग दिखाई दे रहे हैं।

उसके साथ ही मुझे एक मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

घर भी बने हुए है और मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।

जा रही है सामने ही मुझे सूरज है छिपता नजर आ रहा है।